ताकि बाहर से व्यक्ति इस दरवाजे के भीतर और इस कमरे की भीतर के सामान को देख सके।

शहर से कुछ दूरी पर ग्रामीण इलाके का एक दृश्य जिस में आपको कच्चा मार्ग दिखाई पड़ता है इस मार्ग पर आपको कुछ वाहन एक अ चार पहिया गाड़ी और कुछ अ दो पहिया गाड़ियां नजर आती हैं जिन पर कुछ लोग सवार हैं।

एक बगीचा या पार्क का दृश्य आप कह सकते हैं क्योंकि आगे की ओर आपको काफी सारे पेड़ जोकि काफी घने मालूम पड़ते हैं।

समुद्र तट पर बनाया हुआ एक विशेष भू वाक जो की मानव निर्मित सीमेंट से निर्मित है इसमें कुछ सीढ़ियाँ और एक घेरा जो की सीमेंट से बना हुआ हैं।

पर्वत से निकलती एक नदी का रास्ता जोकि गर्मियों की मोसम में पूरी तरह सुखा हुआ दिखाई देता है। बरसात के समय अत्यधिक वर्षा होने के कारण --

वो लंबाई काफ़ी छोटी रह जाती हैं जो हमें पानी दिखता है। यह हमें स्थिर दिखाई पड़ता है इसके दोनों ओर पत्थर व पेड़-पौधे की तादात है।

समुद्र के किनारे बना हुआ एक लाईट हाउस या प्रकाश --

थोड़ी छोटी व मध्यम वर्ग के पहाड़ों को काट कर जाती हुई एक नदी जो की अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं।